डब्बा नजर आ रहा है इस फोटो में--

इस फोटो में पंखा नजर आ रहा--

इस फोटो में हमारे यहां सभी कंपनियों के मोबाइल मिले जाते हैं।

फोटो में मुझे गैस नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे कैमरा नजर आ रहा है।

पाइप नजर आ रही है इस फोटो में--

फोटो में दुकान नजर आ रही है इस फोटो में कांच नजर आ रहा--